टेबल लगे हुए दिखाई दे रहे है उनपे रेड कलर के कलर लगे हुए बहोत सारे लाइटे लगे हुए दिखाई दे रहे है एक लड़का बैठा हुआ है जो कोट पेंट पहने हुए है।

इस इमेज में हम मुझे एक प्रशासनिक भवन बना हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है।

इस इमेज में मुझे एक प्रोद्योगिक संस्था दिखाई दे रहा है इसके ऊपर रंग बिरंगे--

इसी में बो मुझे सब्जियों की दुकान लगी हुई दिखाई दे रही हैं बहोत सारे फल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

छड़ा दिखाई दे रहा पिलर के बाल लहर के म एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और स्विमिंग पूल में बहोत पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है एक पानी में दिखाई दे रहा है ।